ये न हमें एक ब्रीज के सामने का सीन देखने को मिल रहा है। पीछे नीला-नीला आसमान दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक सन जो है न --